बाकी सिर्फ फर्श पर ही खड़े हैं |

में न्यू शंकर फैमिली ढाबा और रेस्टोरेंट लिखा गया है।

जिसमें अ उनके गुरु जीसस क्राइस्ट का क्रॉस बना हुआ है।

यहाँ पे एक क्रांतिकारी भाई की अ मूर्ति भी बनी हुई है।

अभी वहाँ पे लोहे के जाले बना बनाके उसपे डाल रहे हैं उसके लैंटर पे।

और उसके आस-पास बहुत सारा गाड़ियों को ठीक करने का समान या गाड़ियों में से जो सामान निकाला जाता है वो रखा है |

जहां पे भिन्न-भिन्न प्रकार के बहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।